यह एक कॉफी शॉप है यहां पे लोग कॉफी पीने चाय पीने आते हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी रेलगाड़ियाँ रूकती है।

झालर लगाए गए है यह देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यह मंदिर काफी बड़ा है।